और एक आदमी खड़ा हुआ है नीचे साइड दुकान बनी हुई है बाहरकैरम बोर्ड टंगे हुए हैं।

ये रेलवे ट्रैक का है यहां पे रेलवे स्टेशन का है एक लेडीज खड़ी हुई है ।

येलो कलर के और वाइट कलर के रखे हुए हैं एक यहां पे ।

और नीचे टेबल के नीचे एक टप रखा हुआ है जो ब्लू कलर का है एक ।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

ये एक शॉप है यहां पे कांच के बहुत सारे जार रखे हुए और।

ये एक गार्डनिंग की पेक है गार्डनिंग की शॉप है यहां पे छोटे-छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं।

दो छोटे-छोटी और गोल सर्कल के अंदर खड़ा हुआ है वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है व पत्थर के बने हुए स्टैचू और साइड में ग्रीन कलर का प्लांट लगा हुआ है।

और लकड़ी का शोकेस बना लकड़ी का शोकेस बना हुआ है जिसके ऊपर कुछ रखा हुआ है कपड़े से ढका हुआ है।

कलर का पेंट हो रखा है नीचे बहुत सारी लड़कियां ने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है जो इंडियन कॉस्ट्यूम है उन्होंने हाथ में त्रिशूल लिया हुआ है झंडा लिया हुआ है ।

ये एक रोड का पिक है यहां पे रोड का काम चल रहा है और बड़ी-बड़ी मशीनें लगी हुई है।

उसके ऊपर बड़ी सी टोल बनी हुई है इस पर मशीनें लगी हुई है।

ये बच्चे बैठे हुए हैं और दूर दूर तक पहाड़ियां बनी हुई जिसपे पेड़ लगे हुए हैं ग्रीन कलर के।